बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है। बादल होते हुए दिखाई दे रहे है। हाथ में है। ये हाथ में कप ले रखा है। किसी इंसान ने सेलफ़ी होते हुए दिखाई दे रहा है।